अच्छे लगते है अनेको कंपनी का यहाँ कपडा मिलता है उचित रेट पर मिलता है ।

और दिखने में काफी सुन्दर है लोग इसमें स्नान करने के लिए आते हैं।

और अच्छे दुकान है यहाँ पर लोग खरीददारी करने आते हैं ।

डिपोसिट करने का काम है एक अच्छा बैंक है